पिक्चर में देख सकते है हमें यहाँ पे एक शो रूम जेसा कुछ देखने को मिल रहा हमें और काफी वो टायल्स का बना हुआ है काफी बड़ा सा प्यारा सा वो दिख रहा है हमें हम देख सकते है की यहाँ पे हमें चमकती हुए निचे की तरफ हमें टायल्स वगेरा नज़र आ रही है हम दे--

देख सकते है हमें यहाँ ग्रीन कलर की एक दिवाल देखने को मिल रही है और दिवाल के पीछे की तरफ़ हम देख सकते है कि--

के हम बात करे तो यहा पे हमें एक रोड दिखने को मिल रहा रोड के ऊपर एक कार चलती हुई हमें नजर आ रही है साइड में काफी सारे हरे-भरे पेड़-पौधे से हमें दिखने को मिल रहे है और काफ्फी ग्रीन ग्रीन वो लग रहे साइड में हम देख पा रहे पूरी बॉउंड्री बानी हुयी काफी लम्बी सी आगे तक --

हम देख सकते है की हमे यहाँ काफी प्यारा सा व्यू देखने को मिल रहा है क्यू की यहाँ पे काफी सारी ब्रांड न्यू नई स्कूटीस देख पा रहे है जो की--

इसमें हम देख सकते है की यहाँ पे हमें दो अ--स्टैटूज़ नज़र आ रहे है जो कि अ-- नीले रंग से पेंट किये गए है और हम देख पा रहे है यहाँ पे-- हमे उनके उप्पर दो झंडे भी नज़र आ रहे है और उनकी जो बॉडी है जो काफी तगड़ी से बनायीं गयी है।

देख सकते एह सिल्वर कलर की ग्रिल लगा कर रखी है जोकि काफी शाइनी सी लग रही है और काफी प्यारी लग रही है हम देख पा रहे है उसके बिच में एक स्टेचू बनाके रखा हुआ है पथ्हर पे वहां पे लाल रंग का पथ्हर का भी इश्तेमाल किया हु है ब्लैक कलर का पत्थर का --

वहाँ पे रखे हुए है नजर आ रहे है हम देख पा रहे है की वहाँ पे एक फोक और स्पून भी है जो की काफ़ी चमकदार है छोटा बिलकुल भी नही है वहाँ पे लेमन कट के रखा हुवा है एक--

हम देख पा रहे है यहा पे ऊपर की तरफ सीलिंग है सीलिंग पे कुछ बल्ब लगे हुए है टूयब लाईट वगेरा लगी हुई है और हम देख पा रहे है वहां पे सामने कुछ रैंप जैसा कुछ बना हुआ है।

इसमें हम देख सकते हे की यहाँ पे हमें पुराणी सी ईमारत नजर आया रही है जो की ईंटो से सीमेंट से वगेरा चिपका कर बनायीं गयी है ओर हम देख पा रहे की यहाँ पे हमें एक पोधा भी नजर अ रहा है जिसकी हमें हरी-हरी डालिया नजर आ रही है ओर हरे-हरे पत्ते भी देखनो को मिल रहे हैं।